लिबर ऑफिस draw में सामान्य drawings कैसे करें इस पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि निम्न का उपयोग करके साधारण drawings कैसे करें
बुनियादी आकार जैसेlines arrows और आयत
बुनियादी geometric आकार symbols stars और banners
आप यह भी सीखेंगे कि एक object को कैसे चुनें स्थानांतरित करें और डिलीट करें
हाशिया margins set करने के लिए ruler और objects की स्थान set करने के लिए align toolbar का उपयोग करें
यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
object को परिभाषित करें
object से तात्पर्य है draw में उपयोगित आकार या आकार का समूह जैसे lines squares arrows flowcharts आदि
इस slide में दर्शाये गये सभी आकार objects के रूप में उल्लिखित हैं
file watercycle को खोलें जो desktop में सेव की गई थी
हम पहले सीखेंगे कि एक object कैसे चुनें
मानिए कि हम cloud चुनना चाहते हैं तो हम सामान्यतः इस पर click करेंगे
ऐसा करने पर on handles दिखाई देते हैं
handles छोटे नीले या हरे squares होते हैं जो चुनित object के भागों पर दिखाई देते हैं
आप बाद के tutorials में handles और उनके उपयोग के बारे में अधिक सीखेंगे
add अपनी drawing में कुछ अधिक objects जोड़ें
जमीन को प्रस्तुत करने के लिए एक आयत जोड़ें
drawing toolbar में basic shapes पर क्किक करें और फिर rectangle पर click करें
अब cursor को पेज पर स्थानांतरित करें आप capital i के साथ plus का चिन्ह देखेंगे
बायें mouse button को पकड़कर रखें और आयत बनाने के लिए drag करें
अब mouse button को छोड़ दें
अब जमीन से बादल तक जलवाष्प की गतिविधि को दिखाने के लिए कुछ arrows बनाएँ
line बनाने के लिए drawing toolbar में line पर click करें
cursor को पेज पर स्थानांतरित करें
आप तिरछे dash के साथ एक plus का चिन्ह देखेंगे
mouse के बायें button को पकड़कर रखें और ऊपर से तल तक drag करें
आपने एक सीधी line बना ली है
line में दो handles हैं
add line पर एक तीरशीर्ष जोड़ें
हम अब line को चुनेंगे
context menu को देखने के लिए right click करें और line पर click करें
आप line dialog box देखेंगे tab arrow styles टैब पर click करें और फिर arrow style dropdown पर click करें
यह उपलब्ध arrow styles प्रदर्शित करता है
arrow named पहले option को चुनें
ok पर click करें
यह line के दोनों अंत भागों पर thisशीर्ष की चुनित स्टाइल को जोड़ेगा
लेकिन हमें तीरशीर्ष केवल line के एक अंत भाग पर ही चाहिए
तो पहले हम ctrl + z दबाकर इस बदलाव को undo करेंगे
context menu को देखने के लिए फिर से rightclick करें
tab line टैब पर click करें
यहाँ arrow styles के नीचे आप style named field देखेंगे
आप दो dropdown boxes देखते हैं प्रत्येक line के अंतभाग के लिए एक
बायें dropdown box पर click करें और arrow चुनें
दायें dropdown box में none चुनें
ok पर click करें
ध्यान दें कि एक तीरशीर्ष line के अंत भाग में जुड़ गया है
हम lines and arrows option का उपयोग करके भी arrows बना सकते हैं
अब इस arrow के आगे दो और arrow बनाएँ
drawing toolbar से>> lines and arrows पर click करें और line starts with arrow चुनें
cursor को draw पेज पर स्थनांतरित करें
mouse के बायें button को पकड़कर रखें और ऊपर से नीचे drag करें
इस तरह के arrow बनाना आसान है क्यो ऐसा नहीं है
इसी तरह से एक और arrow जोड़ते हैं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
अपनी file mywatercycle में एक line बनाएँ
line चुनें और line dialog box खोलें
line properties field में lines के लिए स्टाइल रंग चौड़ाई और पारदर्शिता बदलें
arrow styles field में arrow की स्टाइल बदलें
अब एक star बनाएँ
drawing toolbar पर जाएँ और stars के go छोटे काले त्रिकोण पर click करें
अब 5point star चुनें
अब बादल के बगल में cursor रखें
mouse के बायें button को पकड़कर रखें और बायीं ओर drag करें
आपने एक star बना लिया है
अब सीखते हैं कि objects को डिलीट और स्थानांतरित कैसे करें
एक object को स्थानांतरित करने के लिए इसे चुनें और इसे इच्छित स्थान पर drag करें
अब mouse button को छोड़ दें
आप object को स्थानांतरित करने के लिए keyboard पर अप down और side arrow का उपयोग भी कर सकते हैं
objects को स्थानांतरित करना आसान है क्या ऐसा नहीं है
एक object को डिलीट करने के लिए इसे चुनें और फिर keyboard पर delete की दबाएँ
object डिलीट हो गया है the यह isn नहीं है
अब बुनियादी सहायकruler और align toolbar के बारे में सीखते हैं
ruler पेज के margins हाशिया के सेटअप और माप की इकाइयों को बदलने के लिए उपयोगित है
align toolbar objects के स्थान के लिए उपयोगित है
ruler सबसे ऊपर और draw कार्यक्षेत्र के बायीं ओर प्रदर्शित होता है
माप की इकाइयों को set करने के लिए सबसे ऊपर ruler पर rightclick करें
आप माप की इकाइयों की एक सूची देखेंगे
centimeter पर click करें
ऊपर ruler के लिए माप की इकाई अब centimeter set हो गई है
उसी तरह बायें पर ruler के लिए माप set करें
सुनिश्चित कर लें कि objects माप में बने to हमेशा दोनों rulers के लिए समान इकाइयों को set करें
आप देखेंगे कि सक्रिय ruler सफेद रंग में है
ruler का अंतभाग पेज margin values को दर्शाता है जिसे हमने page setup में set किया है
देखते हैं कि ruler objects के लिए माप कैसे दर्शाता है
बादल को चुनें
क्या आप ruler पर दो छोटे शुरू और अंत के चिन्ह देख सकते हैं
ये बादल के किनारों को दर्शाते हैं
यदि आप इन चिन्हों को ruler पर स्थानांतरित करते हैं आप देखेंगे कि आकृति तदनुसार परिवर्तित होती है
ruler पेज पर object का आकार दिखाता है
यह हमें पेज पर object के स्थान और पेज सीमाओं को दर्शाने के लिए भी सक्षम बनाता है
अब दूसरे बुनियादी सहायकalign toolbar पर जाएँ
हम align toolbar का उपयोग चुनित object को दायें बायें ऊपर नीचे और centre में पंक्तिबद्ध करने के लिए करते हैं
align toolbar को सक्षम करने के लिए main menu पर जाएँ और view पर click करें
view menu के नीचे toolbars पर click करें
आप toolbars की सूची देखेंगे
align पर click करें
आप align toolbar देखेंगे
अब देखते हैं कि एक object पंक्तिबद्ध कैसे होता है जब हम अन्य align options का उपयोग करते हैं
बादल को चुनें
align toolbar पर left पर click करें
बादल बायीं ओर पंक्तिबद्ध हो गया है
अब दो options centered और centre के मध्य अंतर समझते हैं
हम वृत्त को centre और फिर centered में पंक्तिबद्ध करेंगे
पहले वृत्त को दायीं ओर पंक्तिबद्ध करें
वृत्त को चुनें और align toolbar में right पर click करें
अब align toolbar में centre पर click करें
वृत्त centre पर पंक्तिबद्ध हो गया है
option centre object को पेज के ऊपरी और the के हाशिये के ठीक मध्य में केंद्रित करता है
यह object को पेज की चौड़ाई के अनुसार स्थानांतरित नहीं करता है
अब align toolbar से centered चुनें
वृत्त पेज के centre में पंक्तिबद्ध हो गया है
option centered वृत्त को पेज के centre में पंक्तिबद्ध करता है
यह object को पेज के ऊपरी और तल के हाशिये और पेज की चौड़ाई के अनुसार स्थानांतरित करता है
अब हम objects को अपनी नमूना drawing के अनुसार वापस सही स्थान पर स्थानांतरित करेंगे
इसे बंद करने से पहले file को सेव करना याद रखें
यहाँ आपके लिए दूसरा नियतकार्य है
mywatercycle file में पेज जोड़ें
इन दो आकृतियों को बनाएँ
arrow कीज़ का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करें
कोई object चुनें जिसे आपने बनाया है और इसे डिलीट करें
कुछ objects का आकार मापने के लिए ruler का उपयोग करें
फिर align toolbar का उपयोग करें और objects को पेज के centre में पंक्तिबद्ध करें
इसी के साथ हम libreoffice draw पर इस tutorial के अंत में आ गये हैं
इस tutorial में हमने सीखा कि सामान्य drawings कैसे बनाएँ
बुनियादी आकारों का उपयोग करके जैसेlines arrows और आयत
बुनियादी geometric आकार symbols stars और banners
आपने object को चुनना और डिलीट करना
और objects के उपयुक्त स्थान के लिए ruler और align toolbar का उपयोग करना भी सीखा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
spoken tutorial project team